डबल मंज़िले इस दुकान के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इस दुकान के बाहर सीढ़ियाँ है और उस सीढ़ियों के ऊपर गमले रखे हुए हैं।